मुझे इस चित्र में एक लाल रंग की साड़ी दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एस_बी_आई कार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में दो कांच दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में बहुत सारे कैमरे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में सेदालपुर लिखा हुआ दिख रहा--

मुझे इस चित्र में एक गड्ढा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक वॉटरफॉल दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक अंकल दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में कुछ कांच के गिलास दिख रहे हैं।